यह चित्र किसी जीम का है।

इस चित्र में बहुत से पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

कुछ चलती हुई गाड़ियां भी नजर आ रही हैं।

इस चित्र में बहोत सी सजावट का सामान भी नजर आ रहा है।

चित्र में राज्य सूचना केंद्र भी लिखा हुआ नजर आ रहा है।

यहां पर बहुत सी अलमारियां बनी हुई हैं।